मुझे यहां पर एक ऑटो दिखाई दे रही हैं मुझे यहां पर बहोत सारी दुकान दिखाई दे रही हैं।

इस क्लीनिक में डॉक्टर संजय खन्ना बैठते हैं इसका मोबाइल नंबर एट टू नाइन एट टू शिक्स वन डबल सिक्स फोर टू थ्री है।

मुझे यहां पर एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बर्थडे का डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।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

मुझे यहाँ पर एक रेल गाड़ी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर बहोत सारे खम्बे दिखाई दे रहे है।

मुझे यहां पर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।